इसमें तीन कंप्यूटर रखे हुए हैं।

सामने बैनर भी है और बराबर साइड में--

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टूडियम बन रहा है और बराबर साइड में घास छोटा करने की मशीन भी रखी हुई है।

व्यक्ति पढ़ रहे हैं और छत में दो पंखे हैं और सामने नक्शा है।

बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़े हुए हैं।